ये एक गार्डन दिख रहा है।

ये एक तालाब दिख रहा है।

सामान में वो लड़कियों के पैड्स भी दिख रहे हैं।

और ऊपर भी हरे कलर के पर्दे लगे हुए हैं।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

ये एक कारवाश की दुकान दिख रही है।

चेयरें भी रखी हुई हैं जो कि लाल कलर की है।

नीचे गोल दरवाजे बने हुए हैं।

जोकि पीले कलर की पूती हुई है।

और उस पर लाल कलर की बाउंड्री करी गई है।

यहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

और थोड़ी जगह पर नहीं सजाया गया।

बीच में बड़ा सा टेबल और चेयर रखा हुए हैं।

पर इतने तरतीब से रखें कि वो गिर नहीं रहे हैं।

जो कि बहुत साफ-सुथरा दिख रहा है।

ये एक नर्सरी दिख रही है।

नीचे हरे कलर का कारपेट भी बिछा हुआ है।

यहां पर दो बेड लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक बस खड़ी हुई है।

यहां पर लाइटें भी जल रही हैं।

यहां पर सिमेंट से रोड बना हुआ है।

यह एक खिलौनों की दुकान दिख रही है।

और अंदर स्टीकर भी दिख रहे हैं।

यहां पर पूल टेबल रखा हुआ है।

यह एक हार्डवेयर की दुकान दिख रही है।

दुकानें कांच की बड़ी बनी हुई हैं।

उसके नीचे प्रवीन उसके साइड में एलिगेंस --

ये एक बड़ा सा रोड दिख रहा है।

जो काले और सफेद कलर की पुती हुई।